यह एक ऑफिस है उस ऑफिस में कुर्सी टेबल लगे हुए है और बहुत सारे--

पानी के बोटल को रखे हुए है गोंद को चिपका रहे हैं और एक बच्ची मास्क पहनी हुई हैं किनारे में--